साइड में पेड़ खड़े हुए हैं।

इसमें बहुत सारे आदमी और औरतें खड़ी हुई है।

इसमें एक जीना भी दिख रहा है और इसमें पीछे लड़ी लगी हुई है।

पीछे एक बोर्ड दिख रहा है और कोने में एक कैमरा लगाया है और ए_सी लगी हुई है।

इस फोटो में दो सूरज जी की प्लेट दिख रही है।

यहां बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

जिसमें कुछ बच्चे बैठें हुएं हैं।

फोटो में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

इस फोटो में एक पहाड़ दिख रहा है।

और कुछ बांस की लाठियां दिख रहे हैं।

और यहां पर रात हो रही है।

दराज के अंदर बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

दुकान में एक काउंटर भी रखा हुआ है।

यहां पर एक छोटा स्टूल भी रखा हुआ है।

इस फोटो में एक लोहे का गेट दिख रहा है।

पीछे एक घर दिख रहा है।